नीचे की ओर पौधों की सुखी पत्तियां कुछ फूल डले हुए हैं। कुछ छोटे-छोटे --

एक पेट्रोल पंप पर चार-पाँच पेट्रोल डिपो हैं। एक डिपो के पास एक पेट्रोल --

सामने एक मिरर है और बाजू में एक है।

एक कांच के अंदर एक जैन मुनि की प्रतिमा --

रखी हुई है। उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन --

लगाया गया है। मुनि स्व समाधि की --

उस हॉल में ब्लू कलर का एक डिब्बा रखा हुआ है।

एक ग्रे कलर का चौकोर सर्किट बना हुआ है।

बहुत तेज बाड़ नुमा आकृति बना रहा है।

महिलाएं रंग-बिरंगी साड़ियां पहनकर सजी-सवरी है।

कुछ लोग इस्टेज पर बैठे हैं।

एक गोलाकार कुंड है। कुंड के ऊपर की सहायता से जाली लगाई गई है।

जाली के उस तरफ एक मशीन रखी हुई है।

कुछ बॉटल्स रखी हुई है कुछ मॉक --

बिल्डिंग की हर फ्लोर पर अलग अलग --